अल्पेंलिबे की लोली पॉप भी टंगी हुई हैं आगे टॉफी रखी हुई हैं और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्यू.आर. कोड भी रखा हुआ है।

सामने की दीवाल में लाइटे जल रही हैं और फ्रेम टंगे हुए हैं तीन बड़े बड़े। उन फ्रेम के बीच में रैक बनी हुई है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रई है। एक डांस फ्लोर लगा हुआ है। नीचे और डी.जे. लाइट्स लगे हुएँ हैं। डांस फ्लोर के उप्पर एक चेयर रक्खी हुई है।

मेरे सामने एकदीवाल है उसके बगल में एक गेट हैजिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर एक हैलोजन लगा है।

बोर्ड के आस-पास और गेट के आस-पास खूब सारी लाइट लगी हुई है जो कि रंग बिरंगी हैं ।

फ़ोटो में एक गैलरी दिख रही है जो कि लाइट से और फूलों से सजी हुई है इसकी जमीन पर कालीन बिछी हुई है।